लड़के के पीछे एक सफेद रंग का दिवाल है जीसपे एक स्टील की पाइप लगी है।

जमीन के ऊपर चेयर लगे हुए हैं यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

इन पौधों में कुछ हल्दी के पौधे भी हैं पौधों के पास एक अमरुद है जिसे एक आदमी ने पकड़ा हुआ है।

एक ने काला बैग लिया है तथा दूसरे आदमी ने एक भूरे रंग का बैग लिया है।

इस फोटो में एक दीवाल बना हुआ है दीवाल का रंग सफेद है।

घर के अंदर कुछ फूल बने हुए हैं जो नीले रंग के और हरे रंग के हैं।

के ठीक आगे एक टेबल है जहां पर पूजा का सामान और फाइल रखा हुआ है।

वहां पर एक टिकट की खिड़की बनाई हुई है।

कैबिनेट के अंदर बहोत सारा सामान रखा हुआ है जिसमें से कुछ सामान लोहे का है।

दुकान के अंदर एक बहुत बड़ा सा रेफ्रिजरेटर है।

फील्ड के ऊपर एक कारपेट विछा हुआ है जो हरे और लाल रंग का है।

वृक्षों के पीछे बहोत बड़ा एक नदी है जिसके ऊपर से होता हुआ एक पुल जा रहा है।

पानी का रंग काफी सफेद और साफ दिखाई दे रहा है उसके विपरीत भी एक ऐसा ही दृश्य है।

टेबल के ऊपर एक लैपटॉप रखा हुआ है और वहां पर एक कैलकुलेटर भी रखा हुआ है।

रूम के अंदर बहुत सारा कैबिनेट बना हुआ है कैबिनेट के अंदर बहुत सारे सामान हैं।

मेज के ऊपर कुछ पुस्तकें रखी हुई है।

शोरूम के ठीक अंदर एक ऑटो लगी हुई है।

यूनिवर्सिटी की दीवार सफेद रंग की है।

दुकान के बाहर दो गद्दी है गद्दी का रंग लाल और पर्पल है।

उसके ठीक ऑपोजिट पे एक पक्के का घर है जिसके बाहर दो गाय लगी है।

गाय के ठीक पीछे दो बच्चे साइकिल पर है और उसके बगल में एक ट्रैक्टर है।

बगल में ढेर सारा मकान है जहां पर दो आदमी खड़े हैं।

नीचे जमीन में भूरे रंग का टाइल्स लगा हुआ है।

इस फोटो एक समतल जमीन है जमीन के ऊपर एक छोटा सा पेट्रोल पंप बनाया हुआ है जो एच_पी का है।

पेट्रोल पंप के ठीक बगल में एक बाइक है।